यह घर में ही छोटा सा जू बनाया हुआ है जहां बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं।

बहुत सारे ग्लास लगे हुए है गुलदस्ता रखा हुआ है जिस में अलग अलग फूल रखे हैं।

तीन कुर्सियां है जिसका कलर ब्लू और काला है।

किसी प्रकार का ऑफिस है जहां बहुत बड़े बड़े से सोफे लगे हुवे हैं।

बैनर में भी दो शर्ट है दो फ्रॉक है।

बहुत सारे गमले में छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए --

बहुत सारे काला काला बैग है बड़ा बड़ा खिड़की है।

आगे में एक हंस पीछे में बगल में कमल फूल का पत्ता दिख रहा है।

चेयर सब लाल है एक काला चेयर भी है दो ब्राउन चेयर है एक दो टेबल है।

बहुत सारी झाड़ियां हैं एक खूबसूरत घर है जो करकट से घिरा हुआ है ऊपर में ब्लू कलर का करकट है।

नीचे में फ्लोर जो हैं दो रंगों में हैं हरा और मिट्टी कलर का बहुत सारे लोग जिम कर रहे है पीछे में।

लाइट चल रहा है घंटी भी है।